दुकान के गेट के पा सामने तीन पुतलें रखे हुए हैं।

कुछ मछलिया कटी हुई है कुछ मछलिया बगैर कटी हुई है।

यहाँ पे दो बस दिखाई दे रही है बसों के आगे --

कीच खीचड़ हो रही है कुछ पानी भरा हुवा है पत्थर पड़े हुवे है लोग ईधर से उधर चल रहे है।

यहाँ पे एक ऑटो है एक गाड़ी गाड़िया खड़ी हुई है गाडियों पे कुछ लोग खड़े हुए है।

लड़के ने ब्लू कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ है उसने शूज़ पहने हुए है।

चबूतरे के ऊपर तिरंगा लगा हुवा है यहाँ पे एक बड़ा-सा बोर्ड भी लगा है।

टोपियाँ लगाई हुई है सर पे कुछ लोगों पे सफ़ेद टोपियाँ है।

सामने एक खम्बा है और कुछ बोरिया राखी हुई है एक अलमारी रखी हुई है।

भवन के पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है भवन के आगे एक गाड़ी रखी हुई है।

पे खड़ी हुई है रोड के आसपास छोटे-छोटे क कलरफुल खम्बें हैं।